इसने टी-शर्ट और लोअर डाल रखा है।

घूमने के लिए आते हैं और स्विमिंग करते हैं। स्पेशल यह पानी वाले झूले हैं।

सिलेरियो खड़ी हुई है ये पार्किंग के अंदर खड़ी है बिल्डिंग के नीचे में ये इसके ऊपर बिल्डिंग है।

फ्लाईओवर भी बना रखा है। यह दो फ्लाईओवर है जो --

कुछ मूर्तियां रखी हुई है यह मूर्तियां अलग-अलग रेक में अलग-अलग --

यह गेट बहुत बड़ा है। बड़े होने के कारण ये अभी फिलहाल खुला हुआ है।

इसके बाहर फूल और गुब्बारे लगा रखे हैं।

जहां पर जाने के लिए कुछ पेडिया बनाई हुई है। यह मंदिर थोड़ा ऊंचाई के ऊपर बनाया हुआ है।